यह सामने मे एक घर दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का कुछ घास वागेरा भी दिखाई बीच मे --

और नीचे में भी जो कीड़े हैं वह अजीब सा हो गया है पीला तरह से और यह --

हरे-हरे बोतल मे करके उ समान रखा हुआ है कुछ डब्बे वागेरा भी रखा हुआ है।

बहुत सारे चयर्स रखा हुआ है चेयर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

एक बड़ा भी चम्मच लगा हुआ है अलग मे यहाँ पे प्याज रखा हुआ है कुछ गोलगप्पा रखा हुआ है एक --

यहाँ पे सामने में एक रास्ता दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक बस दिखाई दे रहा है और एक ऑटो भी लगी हुई है रास्ते पे।

यहां पे दो बाइक खड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक ऊपर से ---

ये लड़की है जिसको कुछ पीला कलर के ये लोग दे रहे हैं।

दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ लाइटस भी जल रही है पीछे में और यहाँ पे --

यहाँ पे एक जेन्ट्स दिखाई दे रहे है जो ब्लैक शॉट पहने हुए है उधर देख रहे है।

चेयर्स रखे हुए है एक सजा करके लाइन लाइन से रखा हुआ है एक सामने मे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जो --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

यहाँ पे एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है जो टूटा-फूटा है यहाँ पे गेट जैसा भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ घासे भी दिखाई --